पर्ल में हैश पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे पर्ल में हैश और हैश के एलिमेंट को एक्सेस करना
इस ट्यूटोरियल के लिए मैं उपयोग कर रहा हूँ उबंटु लिनक्स 1204 ऑपरेटिंग सिस्टम पर्ल 5142 और गेडिट टेक्स्ट एडिटर आप अपने पसंद के किसी भी टेक्स्ट एडिटर का उपयोग कर सकते हैं
इस ट्यूटोरियल के अभ्यास के लिए आपको पर्ल में वेरिएबल्स और डेटा स्ट्रक्चर्स का ज्ञान होना चाहिए
कमेंट्स लूप्स कंडिशनल स्टेटमेंट्स और अरैज का ज्ञान अतिरिक्त लाभदायक होगा
कृपया संबंधित ट्यूटोरियल्स के लिए स्पोकन ट्यूटोरियल की वेबसाइट पर जाएँ
हैश डेटा का एक क्रम विहीन संग्रह है
यह एक कीवैल्यू डेटा स्ट्रक्चर है
हैश की कीज़ विशिष्ट होती हैं
फिर भी हैश की समरुप वैल्यूज़ हो सकती हैं
यह हैश का डिक्लेरैशन है
देखते हैं कि हैश से की की वैल्यू कैसे प्राप्त करें
की की वैल्यू एक्सेस करने के लिए सिंटेक्स है डॉलर हशनामे ओपन कर्ली ब्रैकेट सिंगल कोट कीनेम सिंगल कोट क्लोज कर्ली ब्रैकेट
सेम्पल प्रोग्राम का उपयोग करके हैश को समझते हैं
मैंने गेडिट में पर्लहैश डॉट पीएल फाइल में कोड पहले ही टाइप कर दिया है
कोड टाइप करें जैसे कि आपकी पर्लहैश डॉट पीएल फाइल में दिखाया गया है
पर्ल में हैश परसेंटेज चिन्ह द्वारा घोषित होता है
ये हैश की कीज़ हैं
और ये हैश की वैल्यूज हैं
ध्यान दें हैश की की को एक्सेस करने के लिए डॉलर चिन्ह का उपयोग किया जाता है
फाइल को सेव करने के लिए Ctrl एस दबाएँ
फिर टर्मिनल पर जाएँ औऱ पर्ल पर्लहैश डॉट पीएल के रुप में पर्ल स्क्रिप्ट को निष्पादित करें
और एंटर दबाएँ
आउटपुट टर्मिनल पर दिखाया गया है
अब हैश से कीज़ को जोडना और हटाना देखते हैं
की को जोडने के लिए सिंटेक्स है डॉलर हशनामे ओपन कर्ली ब्रैकेट सिंगल कोट कीनेम सिंगल कोट क्लोज कर्ली ब्रैकेट इक्वल टो value सेमीकॉलन की डिलीट करने के लिए है डिलीट डॉलर हशनामे ओपन कर्ली ब्रैकेट सिंगल कोट कीनेम सिंगल कोट क्लोज कर्ली ब्रैकेट सेमीकॉलन अब इसे एक सेम्पल प्रोग्राम का उपयोग करके समझते हैं
मैंने हैश्कियोपरेशंस डॉट पीएल फाइल में कोड पहले ही टाइप कर दिया है
यह हैश का डिक्लेरैशन है
हम इस हैश से कीज़ जोड़ेंगे डिलीट करेंगे
यहाँ हम पहले ही बनाये हुये एक हैश में की जोड़ रहे हैं
यह वेरिएबल में वैल्यू निर्धारित करने के समान है
डिलीट कीवर्ड की को डिलीट करने के लिए उपयोगित है
हमें की को डिलीट करने के लिए पास करने की आवश्यकता है
फाइल को सेव करने के लिए CtrlS दबाएँ
टर्मिनल पर जाएँ और पर्ल हैश्कियोपरेशंस डॉट पीएल के रुप में पर्ल स्क्रिप्ट निष्पादित करें
और एंटर दबाएँ
आउटपुट टर्मिनल पर दिखाई देगा
हैश कीज़ और वैल्यूज़ को क्रमबद्ध करना देखते हैं
कीज़ को क्रमबद्ध करने के लिए सिंटेक्स है सोर्ट ओपन ब्रैकेट कीज़ परसेंटेज हशनामे क्लोज ब्रैकेट सेमीकॉलन
इसी प्रकार हम हैश की वैल्यूज़ क्रमबद्ध कर सकते हैं सोर्ट ओपन ब्रैकेट वैल्यूज़ परसेंटेज हशनामे क्लोज ब्रैकेट सेमीकॉलन एक सेम्पल प्रोग्राम का उपयोग करके क्रमबद्ध करने की प्रक्रिया समझते हैं
गेडिट में सोरथाश डॉट पीएल पर जाएँ
कोड टाइप करें जैसे आपकी सोरथाश डॉट पीएल फाइल में स्क्रीन पर दिखाया गया है
यहाँ हमने एड्रेस का हैश घोषित किया है
यहाँ कीज़ को क्रमबद्ध करने के लिए हमने कीज़ फक्शन के साथ सोर्ट इनबिल्ट फंक्शन का उपयोग किया है
यह हैश कीज़ को वर्णात्मक क्रम में क्रमबद्ध करेगा
इसी तरह हम सोर्ट फंक्शन का उपयोग हैश की वैल्यूज़ पर कर सकते हैं
क्रमबद्धता संख्यात्मक कीज़ औरया वैल्यूज पर भी कर सकते हैं
फाइल को सेव करें और टर्मिनल पर जाएँ
पर्ल सोरथाश डॉट पीएल टाइप करके स्क्रिप्ट को निष्पादित करें और एंटर दबाएँ
आउटपुट टर्मिनल पर दिखाई देगा
अब देखते हैं कि हैश की सभी कीज़ और वैल्यूज़ को कैसे प्राप्त करें
पर्ल सभी हैश कीज़ और वैल्यूज़ को फेच करने के लिए इनबिल्ट फंक्शन को प्रदान करता है
कीज़ फंक्शन का उपयोग हैश की सभी कीज़ को पुनः प्राप्त करने के लिये किया जाता है
वैल्यूज फंक्शन सभी कीज़ की वैल्यूज़ रिटर्न करता है जबकि ईच फंक्शन हैश पर दोहराया जाता है और हैश से कीवैल्यूkeyवैल्यू युग्म रिटर्न्स करता है
इन्हें एक सेम्पल प्रोग्राम का उपयोग करके समझते हैं
इसके लिए हम पर्लहैश डॉट पीएल स्क्रिप्ट का उपयोग करेंगे जिसे हमने पहले ही इस ट्यूटोरियल में बनाया है
निम्नलिखित कोड के भाग को टाइप करें जैसे स्क्रीन पर दिखाया गया है
अब कोड को समझते हैं
हैश में कीज़ फंक्शन एक अरै रिटर्न करता है जिसमें हैश की सभी कीज़ शामिल हैं
हैश में वैल्यूज फंक्शन हैश की सभी कीज़ के लिए वैल्यूज़ के अरै को रिटर्न्स करता है
ईच फंक्शन कीवैल्यू के युग्म को रिटर्न्स करता है
यहाँ हमने व्हाइल लूप का उपयोग किया है
यह हैश की प्रत्येक कीवैल्यू पर पुनरावृति करेगा जो ईच फंक्शन द्वारा रिटर्न होती है
फाइल को सेव करने के लिए CtrlS दबाएँ
अब पर्ल पर्लहैश डॉट पीएल टाइप करके टर्मिनल पर स्क्रिप्ट को निष्पादित करें
और एंटर दबाएँ
निम्न आउटपुट टर्मिनल पर दिखाई देगा
अब हैश पर लूपिंग के कुछ अन्य तरीके देखते हैं
हम हैश की प्रत्येक की की पुनरावृति के लिए फोरिच लूप का उपयोग कर सकते हैं
फिर की की वैल्यू पर क्रियाओं के सेट को क्रियान्वित करते हैं
सिंटेक्स स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है
यहाँ फोरिच लूप की प्रत्येक पुनरावृति हैश से variable को के निर्दिष्ट करेगी
फिर यह उस variable का उपयोग वैल्यू को फेच करने या क्रियाओं के सेट को क्रियान्वित करने के लिए करता है
इसी तरह हम हैश वैल्यूज़ पर लूप कर सकते हैं जैसे स्क्रीन पर दिखाया गया है
हम एक सेम्पल प्रोग्राम देखेंगे
अतः गेडिट में लूपिंगवरहश डॉट पीएल पर जाएँ
कोड के निम्न भाग को टाइप करें जैसे आपके लूपिंगवरहश डॉट पीएल पर दिखाया गया है
कोड का यह भाग हैश की सिंगल की को रिटर्न करता है
यहाँ हमारे केस में पहली बार डॉलर कीके विभाग को कीज़ के रुप में शामिल करता है
फोरिच की दूसरी पुनरावृति में नेम की रिटर्न होती है
ध्यान दें हैश डेटा का अव्यवस्थित संग्रह है
अतः कीज द्वारा प्राप्त रिटर्न हैश बनाते समय परिभाषित क्रम में नहीं होगा
वैल्यूज़ पर लूप एक सामान्य तरीके से कार्य करता है
फाइल को सेव करने के लिए Ctrl एस दबाएँ
फिर टर्मिलन पर जाएँ और पर्ल लूपिंगवरहश डॉट पीएल के रुप में पर्ल स्क्रिप्ट को निष्पादित करें
और एंटर दबाएँ
निम्न आउटपुट टर्मिनल पर प्रदर्शित किया जाता है
संक्षेप में इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा सेम्पल प्रोग्राम का उपयोग करके पर्ल में हैश और हैश के एलिमेंट्स को एक्सेस करना
यहाँ आपके लिए नियत कार्य है की के रुप में विद्यार्थी का नाम होने और वैल्यू के रुप में उसकाउसकी प्रतिशत होने पर हैश को घोषित करें
कीज़ वैल्यूज और ईच फंक्शन का उपयोग करके हैश पर लूप करें
फिर प्रत्येक विद्यार्थी के प्रतिशत को प्रिंट करें
निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें
यह स्पोकन ट्यटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है
यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके देख भी सकते हैं